में एक शॉप है जिसका अंदर में एक आदमी खड़ा हो के है।

फेसवॉश और सब बहोत सारा लुक है।

और दीवार में मसाला का पैकेट लोग भी टंगाया हुआ है।

में एक शॉप है इसके अंदर में बहुत सारा हेंगर लुक रखा हुआ है।

ऊपर में दो ब्लैक कलर का बैग भी है।

साइड में ही के_एफ_सी रेस्टोरेंट लिख के भी एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

आगे में स्लाइड भी बना के है।

मेला के बीचो बीच में बहोत सारा लाइट लोग लगाया हुआ है।

और उसका ऊपर में कपड़ा और लोग भी पैक करके रखा हुआ--

इसका नीचे में हीं डम्बल लोग भी रख के दिखाई दे रहा है।

और एक स्कूटी भी पार्क करके है।

और एक औरत सीढ़ी को साफ करके भी दिखाई दे रहा है।

यह एक सलुन का फोटो है जिसका अंदर में दो ब्लैक कलर का चेयर रखा हुआ है।

दीवाल में बहुत सारा शैंपू और मेकअप का सामान लोग रखा हुआ है।

आगे है और नीचे में एक व्हाइट बोर्ड भी रखा हुआ है।

आ डेस्क में एक कैलकुलेटर भी रखें है।

इसमें शॉप लोग भी और अलग क्रीम और शैंपू लोग भी रखा हुआ है।

यह में एक बिल्डिंग भी है जिसमें ट्विल्स भी लिखा हुआ है।

दुकान का आगे में बहुत सारा आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

जिसका साइड में पोस लोग भी लगाया हुआ है एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

ये रुम मे ए_सी भी लगाया हुआ है।

सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है ग्राउंड में छोटा छोटा ग्रास लोग भी निकला हुआ है।

उनका साइड साइड में घर लोग भी बनाया हुआ है।

ये घर का छत जो पन्नी से बनाया हुआ है।

फोटो में बहुत सारा कपड़ा लोग हैंगर में टंगाया हुआ है।

दीवार में बहुत सारा फूड आइटम्स का पिक्चर लोग भी है।

वॉल का ऊपर में एक नोटबुक रख के भी दिखाई दे रहा है।

नदी का साइड साइड में बड़ा बड़ा पेड़ लोग कुछ निकला हुआ है।

पर में एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगा के है।

ऊपर में बंबू भी बनाया हुआ है जिसमें--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

ऊपर में मशीन लोग भी टांगया हुआ है जिसका साइड मे एक छोटा सा टेलीविजन भी रखा हुआ है।

में एक स्विच बॉक्स भी बनाया हुआ है।

इनमें से कोई कोई लोग छाता भी पकड़ के है जो की ब्लैक कलर का--

आगे में एक बिल्डिंग है जोकि येलो और रेड कलर से पेंट कर के है।

यहाँ का आदमी लोग सब लोगों ने कमीज लुक भी पहना हुआ है।

आगे में डेस्क में एक कैलकुलेटर भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

और एक सूटकेस की नजर आ रहा है।

पीछे में गाड़ी और स्कूटी लुक भी पार्क कर के है।

को रेड कलर से पेंट करके है।

हमें एक लंबा सा पाईप भी लगाया हुआ है।

यह एक रोड़ बनाया हुआ दिखाई दे रहा है इसका मिडिल पार्ट में--

वह एक क्रीम कलर का टीन भी है।